ढेर सारे हरी पत्तियां भी लगे हुए हैं कबूतर का कलर --

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर में एक टेबल कुर्सी लगाया हुआ है।

पौधे भी लगे हुए हैं ऊपर झूमर लगे हुए हैं और लाइट भी बर रहे हैं।

इस तस्वीर में बड़ा सा एक रोड है जिस रोड पर तीन-चार गाड़ियां लगी हुई हैं।

एक कुर्सी है जो काले कलर का है नीचे ढेर सारे सामान रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक घर है।

और ऊपर पंखा है अगल-बगल खिड़की है और ढेर सारे चित्र दिवार पर सजाऐ गए हैं।

बांस के खंबे लगाकर ऊपर से सब तिरपाल लगाए हुए है।

इस तस्वीर में एक पानी दिख रहा है उसमें पानी का तेज़ लहर इसमें बच्चे और बच्चियां ने स्नान कर रहे हैं ऊपर से एक पूल है जो बड़ा है।

कुछ दीवार पर टंगे हुए भी हैं और ढेर सारे बच्चे और बच्चे टोपी लगाये हुए हैं।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में एक पर्दा है।

एक घर है जिस घर में एक--

कुछ-कुछ खिलौने लटकाए गए हैं कुछ-कुछ खिलौने रखे गये हैं।

और ढेर सारे सामान है इस तस्वीर में--

काला कलर का बैग है और एक झोला भी है काला का--

बच्चे और बच्चियां ढेर सारी हैं दो-तीन औरते हैं जो प्रसाद लेकर पूजा कर रहे हैं अगल-बगल पेड़-पौधे हैं।

बड़े-बड़े वृक्ष हैं और बीच में एक रोड है जिस पर बच्चे-बच्ची खड़ा है और कुछ--

सारे सामान रखे हुए हैं ऊपर आकाश है नीचे सब--

और छोटे-मोटे सामान भी रखे गए हैं।

ढेर सारे आदमी खड़े हैं कुछ--

दिवार पर पोस्टर लगा हुआ कुछ सामाने रखे गए हैं।

तस्वीर है इस तस्वीर में एक फील्ड है इस फील्ड में--

एक चित्र है जिस चित्र में दुकान भी है और दुकान को पूरे तरीका से सजाया गया है।

पटरी पर ट्रेन आ रही है ऊपर से पुल है।

एक जमीन है जमीन पर दो गाड़ियां लगी हुई हैं एक आदमी चल रही हैं।

तीन चार लड़के हैं जो खेल रहे हैं अगल-बगल--

ढेर सारा ईटा दिख रहा है अगल-बगल घर है।

इस तस्वीर में एक घर है इस घर--

एक ब्लू हरा कलर का टैंकर है अगल-बगल--

अ जगह-जगह पर छोटे-छोटे पेड़ पौधे हैं ऊपर आकाश है कुछ ईंटे भी दिख रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा सामान ऊचां में है बीच में एक पोल है पोल पर कुछ सामान लगाये अगल-बगल--

घास हैं अगल-बगल पेड़-पौधे हैं कुछ बड़े-बड़े बगैचे भी हैं अगल-बगल घर हैं ऊपर आसमान है।

इस तस्वीर में एक पहाड़ जैसा दिख रहा है उस पर एक लड़का खड़ा है ऊपर कुछ डिजाइनें हैं।

और दो खिड़कियां हैं जो खिड़की के गेट खुले हुए हैं गेट के बाहर हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

इस चित्र में एक फोटो है भगवान का सामने एक पर्दा है दिवार पर एक घड़ी है।

एक औरत है औरत के बगल में एक लड़का है नीचे दिवार है।

इस तस्वीर में एक घर है इस घर में दो-तीन दुकानें हैं और उस दुकान में फूल से रखे गए हैं और--

अगल-बगल लड़के और लड़कियां हैं कुछ उसके सामने गेट हैं।

अ टेबल है टेबल पर एक सामान रखे गये हैं दो सिस्टम हैं दो कुर्सियां हैं अगल-बगल लाइट जल रहे हैं।

और दो-चार आदमी खड़े होकर देख रहे हैं।

पोल है पोल पर लाइट लगे हुई है तीन चार तारे हैं।

एक गेट है गेट को--

बतीया रहे हैं अगल-बगल पूरे मछलियां भरे हुई हैं।

इस तस्वीर में सामने एक घर है घर के नीचे एक स्कू--

अगल-बगल हरे भरे घास हैं।

ऊपर आकाश है पानी में कुछ छोटे-छोटे सामान भीगे हुए हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है।